यहाँ थाली है मिक्सर मशीन हैं।

यहां एक लड़का है वह कपड़ा में आयरन कर रहा है और यहां दू चार गो गुब्बारा है यह लड़का मार्क्स लगाया हुआ रखा हुआ।

काला कलर का सेट पहने है सफेद कलर का मास्क लगा हुआ हैकाला जैकेट है।

का कुछ कुछ है वाइट कलर का घर है इ शिशा है एक लेडिस भी है प हरे भरे पत्ते हैं।

यहां शादी है शादी का सजावट है यहाँ बल्ब लगा है यहाँ इतना बोल लगा हुआ हैटुनी बोल लगा हुआ है।

यहां नदी है उस इस पार पहाड़ है एक लकड़ी का पेड़ है उस पार नदी का उस पार बहुत --

यहां बहुत सारे आदमी है यहां कुछ यहाँ दो चार टोटो भी लगे हुए है यहां वा व्हाइट कलर का बिल्डिंग है।

ब्लैक कलर का कुछ पत्ते हो गए यहां नारियल का पेड़ है यहां कच यहाँ कुछ कचु का भी--